तीन चार आदमी काम कर रहे हैं यह रेती सीमेंट है ।

जार कटे हुए जार के ऊपर घास का एक हड़ बनाया है ।

यह एक मंदिर है यह हस आजू बाजू हरियाली है।